दुकान में बहुत समान दिखाई दे रहे हैंदो तेल के बोतल दिखाई दे रहे हैंदो माचिस के डब्बे दिखाई दे रहे हैं नीचे और तेल के बोतल दिखाई दे रहे हैं।

एक पुस्तक ल पकड़े हुवे दिखाई दे रहे हैं जिसमें वार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

सामने एक पहाड़ जैसा पर्वत दिखाई दे रहा हैं उसके बगल बहुत आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें जोका कैफे लिखाई दिखाई दे रहा है।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

सामने एक दीवाल घड़ी लगा हुआ है एक कोन्टर दिख रहा है बगल में बहुत सारी रेड रंग की कुर्सियां लगी हुई है।

बहुत सारे शर्ट दिखाई दे रहे हैं ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बड़े बड़े पत्थल दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक रस्सी लगा हुआ है जिसमें बहुत गेंदा फूल लटके हुए दिखाई दे रहे है।

आदमी दिखाई दे रहा है जो हेड फोन लगाया है हाथ में बोतल है सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे --

सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक इस्प्राइट का बोतल रखा दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक तराजू दिखाई दे रहा है।

एक अंडा दिखाई दे रहा है तीन कैरट अंडा उसके बगल में बहुत सारे कुरकुरे टंगे हुए दिखाई दे रहे --

उसके बगल में एक खिड़कियां दिखाई दे रही है जो पीले रंग की रंगी हुई दिखाई दे--

गरेज में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है एक र रेड रंग की है। एक वाइट रंग की है दूसरा और एक वाइट रंग का है।

सामने एक ब्लू टंकी दिख रहा है जीसके साइड में गैस सिलेंडर दिख रहा है।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

एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बांस के लकड़ी के बने डाला मछुआरा बहुत सारे जाल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे टेबल रखे हुए दिखाई दे रहा है उस टेबल में एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है जिसने नीले कलर के ट्राउजर पहने हुए दिखाई दे रहा है।

स्टेज में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसमें माइक हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रहा--

सारे एन_सी_सी के होल्डर दिखाई दे रहे हैं सभी अपने ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं।

चार बैलून लगा हुआ दिखाई दे रहा है बगल में दो और बैलून लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बगल में बहुत करकट का झोपडी दिखाई दे रहा हैउसके बगल मे और सारे व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

पंडाल का सजावट बहुत तेज फूलों का दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक मूर्ति दिखाई दे रही है पंडाल मे बहुत सारे फूल सजाए गए हैं कुछ फ़ुल पीले कलर रेड कलर के।

सामने एक दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक लेडिस दिखाई दे रही है। सामने वाइट रंग का एक छत दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे तरह तरह के लाइटे लगाई हुई दिखाई दे रहे--

बगल में एक और लेडिस दिखाई दे रही है उसके बगल में और एक लेडिस दिखाई दे रही है।

के बगल में बहुत सारे तितलियां दिखाई दे रही--